और बीच बीच में रेलिंग जैसा लगा हुआ है और ऊपर में लाइट लगा हुआ है।

जो ब्लू कलर का है सामने मे बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे दीख रहे है घासें दीखरी है एक बड़ा सा लाइट वाला खंबा लगा हुआ है।

यह पे कुछ सीडी सीडी जैसा बना हुआ दिख रा है ओर ग्राउन्ड पूरा घेरा हुआ है ओर उसके पीछे बहोत सारे घरे दिखाई दे री है कुछ बड़े बड़े खंबे दीख रहे है।

यहां पर एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जहां पे बहुत सारी हरी हरी घासे लगी हुई है।